तथा साइड मे बहोत सारी घर दिखाई दे रही है जिसपे नीली कलर की लाइटिंग से सजावट की गई है तथा हरी पेड़ पौधे जिसपे हरे रंग की लाइट से सजावट की गई है।

यह तस्वीर किसी मस्जिद की दिखाई दे रही है तथा छोटी नाम बढ़ा--

यहां पे अच्छी तरह से साफ सफाई का ध्यान रखा गया--

सभी महिला और एवं पुरुष व्हाइट कलर --

इमेज कोई कल्चरल डांस का दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी लड़कियां डांस करती हुई दिखाई दे रही है।

इहा इमेज किसी व्यस्त मार्केट की दिखाई दे रही है जहां पे लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की जा सकती है जिसके बाहर जिसके अंदर काफी अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था दिखाई दे रही है।

ये एक रॉयल कैफे नाम का एक कैफे है।

जिसमें चाय या काफी हो सकती है।

गोमती नगर लखनऊ में है।

दो कार खड़ी हुई है जो की लाल और मेहरून कलर की--

सामने कुछ बाइक भी खड़ी हुई हैं तथा वहां लो--

मस्जिद के पीछे का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें एक मस्जिद बनी हुई है जिसके पीछे--

यहां पे रुकने की अच्छी व्यवस्था लग रही है।

यहां रात का समय है यहां पे लाइटिंग की अच्छी व्यवस्था की गई हैं।

बाहर रखे हुए टिन तथा टाइल को देखकर यह लग रहा है कि यहां पे कुछ कारें --

किसी मंडी की मंडी का दृश्य यहां पे फ्रेश सब्जियां दिखाई दे रही हैं जैसे बैंगन धनिया।

ऐसे ही नींबू धनिया केला--

यह बिल्डिंग एनसीएंट ग्रीक टाइप की बिल्डिंग लग रही है जोकि बोहोत सारी पत्थरों के ऊपर बनी हुई है।